दुकान पर लक्स कोज़ी भी लिखा हुआ है साइकिल है बोहोत सारी साइकिल पर यहा पर दो काँच लगे हुए है।

यहाँ पर बहूस-बहुत छोटे बच्चे पड़ते हुए नजर आ रहे है।

और रेत पड़ी हुई है अह रेत पड़ी हुई है रेत पड़ी हुए है और पेड़पौधे दिखाई दे रहे है अगल-बगल ग्राउंड है और एक प्लॅट दिखाई दे रहा है दूर--